यहां पर भी बहुत बड़ा सा हमें।

और छत पे से पूरा शहर दिखाई दे रहा है जो की बहोत ही खूबसूरत लग रहा है।

जो कि बहुत बड़ी है और इसको देखने से बहुत सुंदर व्यू नजर आ रहा है।

प्यारी लग रही है यहां बहोत सारी--

बहुत बड़ा सा जंगल है जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर--

अर्थ है जोकि देखने में बहोत सुंदर है।